लला तला लू लू छोटी छोटी धूम धूम बाली तिथा बड़ी लत लगी--

दंत पोतता लय इथ-इथ तल्ला तल्ल इथ थ ये यहा पर देखने को लत दिखाई--

ये तीन दिखाई दे रहो।